डेकोरेटिस पेड़ है एक पंखा ये गर्मी के दिन का फोटो हमें लग रहा है क्योंकि पंखा जल रहा और अंदर में लाइट्स भी लगे हैं।

यह जो फोटो है यह एक कुम्हार के घर का फोटो है यहाँ काफ़ी सारा सुंदर बर्तन बना कर रखा हुआ है यह सिल्वर रंग से सारे बर्तन को तैयार किया गया है।

बीच-बीच में झंडा लगा है सबसे पीछे इंडिया का झंडा लगा हुआ है बीच में एक टावर भी है और सामने जो सीढ़ी जैसा झुला बना है उसमे एक आदमी खड़ा है और साइड में भी एक आदमी खड़ा है ।